यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है और फोन पर बातें कर रहा है।

कई सारे कलर है जो की--

यहाँ पे एक टीचर पढ़ा रहा है और वह--

उम्म डिजाइन बनाए गए हैं और बहुत सारे--

पे रखे गए हैं और यहाँ गुलदस्ते में--

खड़ा हुआ हैं जो कि वह वाइट और--

अ ग्रे कलर उम् व्हाइट एंड उम् म मिल्की व्हाइट --

और ये स्कूल के दीवाल का कलर ब्लैक और ग्रे --

यहां पे एक स्टेट बैंक का ए_टी_एम है।

यहाँ पे एक एयरटेल पेमेंट बैंक का पोस्टर लगा हुआ हैं।

एक दुकान है और दुकान के अंदर काउंटर बना हुआ है।

एक तीन बेड पे दो-दो पिल्लो रखे गए हैं और यहाँ --

यह साइड में सिंगल बेड पे सिंगल --

यहाँ पे वाइट कलर की एक बड़ी सी कप--

टैटू में बना कर के रखा गया पहना करके कपड़ा हैं जो कि--

का हैं और यहाँ पे एक व --

और यहां से एक लड़का फोटो ले रहा है वो पहाड़ वाला ल--

और वहां उसमें लाइन में कुछ लड़कियां भी भी लगी हुई--

हैं और उसके बगल में एक लड़का खड़ा है जो--

जो कि यहाँ पे एक बड़ा सा पीछे में मकान दिख रहा हैं।

यहाँ पे प कुछ लड़के लोग पेंट कर रहे हैं और वआ--

एक सीढ़ी पे चढ़ा हुआ लड़का ऊपर दीवाल पे कुछ काम कर रहा है।

सेम है जो कि इसमें एक कपड़ा सेम नहीं पहना हुआ है।

वगैरह रखे गये हैं रखे हुआ है और वो--

यहाँ पे एक डेकोरेशन किया गया है।

अंदर शीशे के अंदर कोई पुरानी सामान रखी हुई है जो कि साफ नजर नहीं आ रही है।

बोहोत सारे आदमी भी खड़े हैं और कुछ आदमी चेयर पे मेज़ पे बैठे हुए हैं।